यहाँ से पानी दिख रहा है और यहाँ पत्थर भी दिख रहे हैं और पानी के ऊपर एक पेड़ झुका हुआ है।

और पानी बह रहा है और आसमान भी दिख रहा है पानी बहुत सारा है।

यहां से एक घर नजर आ रहा है जिस पे बहुत-बहुत धारी वाला पर्दा लटक रहा है और ब्लैक कलर की अ खिड़की भी नजर आ रही है और यहां पे एक बॉक्स रखा है और एक बेड भी बिछा है।

घास पे बहुत सारे भुट्टे के पत्ते पड़े हुए है और यहाँ पे बहुत सारी सुखी-सुखी घास है और यहाँ से आसमान भी दिख रहा है बहुत सरे भुट्टे भी रखे हुए हैं भुट्टे पे --

ये एक नाई की दुकान है नाई की दुकान पे एक अंकल दाढ़ी बनवा रहे है ओ जो ब्लू का कलर का गाउ उ कपड़ा ओढ़े हुए है और एक अंकल दाढ़ी बना रहे है।

यहाँ पे शादी का फंक्शन चल रहा है यहाँ पे बहुत से लोग सेल्फी भी ले रहे है और वाइट कलर की छतरी भी नजर आ रही है एक अंकल खड़े हुए है और भी --

ब्लू कलर और ब्लैक कलर की ड्राविंगे भी रखी हुई है।

और व्हाइट कलर का गेट भी लगा हुआ है जिस पर ब्लैक कलर की शटकने लगी हुई है और और उम्म मशीन रखी हुई है जिसमें व्हाइट उसके पीछे व्हाइट कलर के दरवाजे हैं डस्टबिन रखा है जहाँ --